दे रहे हैं ये प्लेस जो है यहां पे लोग विजिट करने के लिए आए हैं और यहाँ--

मुझे सामने काफी अच्छा मौसम और काफी ज्याद ग्रीन ग्रीन हरियाली जैसा दिखाई दे रहा है ये ऐसा--

लग रहा है किसी की बालकनी है इसके नीचे देखने पर काफी सुंदर मौसम--

और एक ये शायद कोई दुकान वगैरह है जो कि यहां पे दिखाई--

यहां पे गिफ्ट का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पे मालाएं लटकती हुई नजर आ रही है जो कि ऐसा लग रहा है कि--

बाहर वो कुछ लिखा हुआ है जो कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है और बिल्डिंग के बाहर में मिट्टी वगैरह--

कार खोल के बाहर निकला है कार का गेट ओपन दिखाई दे रहा है एक आदमी जिसने हेलमेट पकड़--

ये किसी रोड की फोटो है यहां पर ये आदमी झाड़ू मार रहा है और यहां पर गाड़ी वगैरह नजर आ रही है कुछ लोग खड़े होकर देख और--

फोटो नजर आ रही है ये जो कैफे इसमें मनी प्लांट का पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि का--

सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि बैलून वगैरह से यहां पर डेकोरेशन किया गया है और यहां पर जो लोग है वो एक लाइन बना के खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

ले रहा है और ये जो आदमी है वो टॉपी वगैरह--

हम उसके पीछे भीं शायद कोई हैं और इसका हाथ दिखाई दे रहा हैं और ये जो आदमी लड़का हैं।